इस फोटो मे दिन का समय दिखाई दे रहा आस पास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जेंट्स भी है और लेडीज भी हैं फर्श पे पत्थर डला हुआ है ऊपर पंखे लगे हुए हैं।

इस फोटो में काफी सारे भैंसे और गाय दिख रही हैं।

दिन का समय है घास दिख रही है मिट्टी दिख रही है।

टेबल ऐथीक है और यहां पे लाइटिंग है एक येलो कलर की लाइट जल रही है ऊपर कुछ लिखा हुआ पिंक कलर की लाइट से लिखा हुआ है यहां पर --

इस फोटो में सामने लिखा हुआ है एज्यूर ए_जेड_यू_आर_ई ।

एक चेयर है जिसके ऊपर न देखो ब्लू कलर का कैंपर रखा हुआ है ठीक है।

ठीक है और जो उस गेट मेन वो वो ऐ शटर है वो वाइट कलर का है।

कीबोर्ड है माउस है ठीक है सी_पी_यू भी है पीछे एक लड़का और खड़ा उसने भी जैकेट पहनी हुई है मास्क लगाया हुआ है स्विच बोर्ड है पीछे।

यह मेहंदी कलर की जिंस पहिनी हुईं हैं सीट पे ये दोनो बैठे हैं नीचे हरे रंग का कार्पेट बिछा है पीछे फूलों की डेकोरेशन है छोटे छोटे पौधे लगे हुए आस पास--

ये कार खड़ी हुई है जोकि वाइट कलर की कार है।

इस फोटो में सामने लिखा हुआ है दावत पैलेस --